यहां पर एक जिम दिख रहा है।

और शिव भगवान दिखाई दे रहे हैं।

वॉकिंग करते हुए दिखाई दे रहा है।

और यहां एक कुर्सी भी दिखाई दे रही है।

और लाइब्रेरी में कई सारी किताबें--

दो तकिये और दो सोफ़े दिख रहे हैं।

आसमान बहुत अच्छा दिखाई दे रहा--

एक गणेश जी की मूर्ति दिखाई दे रही है।

चालू दिखाई दे रहा है।